और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो ग्रास है यहां पे और यहाँ पर चला --

यहाँ पर एक दरवजा दिखाई दे रहा है और बाये तरफ कुछ कम्प्यूटर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक महिला साड़ी पेहन के खड़ा हुआ है। दाए तरफ बहुत सारे चैर टेबल रखा हुआ है । यहाँ पर ऊपर पंखा भी चल रहा है।

पिक्चर में आप लोग देख सकते हो की एक कार है कार में कुछ ठीक किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ टायर है दिखाई दे रहा हैं और यहाँ पर टीन का है सामने बहुत सारा कुछ दिखाई दे रहा है।

इसके पास में पर्दा भी है और ये जो है ब्लू कलर में है जोकि दिखने में अच्छा लग रहा है और कंकाल के हड्डियां दिखाई दे रहा है। ठीक है --

यह एक लाइटिंग का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। और एक पीछे वाल है और ये जो है गोल्डन कलर में ये बोर्ड है यहाँ पर ताला भी लगा हुआ है।

यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक दो तीन करके वगैरह है | जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो--

ये आर वन फाइफ है और यह बड़ी झील दिखाई दे रहा है पीछे आसमान दिखाई दे रहा है आ चारो तरफ हरा भरा से भरा हुआ --

का तार भी दिखाई दे रहा है। बाइक रखी है पेड़ भी दिखाई दे रहा है और सामने बहुत सारे पेड़ हैं।

यहाँ पर देख सकते हो एक बहुत ही पुराना घर दिखाई दे रहा है। चारो तरफ जंगल से घिरा हुआ है सामने आसमान दिखाई दे रहा ही औ चारो तरफ ही जंगल ही जंगल है।

यहाँ पर एक लड़का-लड़की योगा कर रहा है पीछे ब्लैक कलर में पर्दा दिखाई दे रहा है। और यह तारो से घिरा हुआ है।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

और यहाँ पर ग्रीन कलर का पेड़ है और सामने आसमान दिखाई दे रहा है।